यहाँ पे हम बहोत सुंदर सुंदर रेड कलर के--

यहाँ पे हम बहुत सारे--

जौ है एक सौ ग्राम का--

यहाँ पे हम एक नदी देख पा रहे है इस नदी के ऊपर एक ब्रिज है।

इस स्कुल में कुछ प्रोग्राम हो रहा है जिसके लिए हम यहाँ पे स्टेज में कुछ छोटे-छोटे बच्चों को--

इसके अलावा यहाँ पे हम कुछ पेड़ भी देख पा रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रिक पोल एंड तार भी यहाँ पे हम देख सकते--